इस तस्वीर में आप एक किले नुमा घर को देख सकते हैं जिसके पास में --

तथा इसके ऊपर बहुत सारी घांस उगें है तथा इसके अंदर बहुत सारि काई हरे रंग की लगी हुई दिखाई पड़ रही है और दीवाल भी झड़ चुकी हैं।

पता ये ऊपर से टूटा हुआ दिख रहा है और इसकी इमारत हल्की हल्की झड़ गयी --

तथा यहाँ पे एक टेंट लगाया गया है।

एस तस्वीर मे आप देख सकते है की बहुत सारे फुहारे दिखाए गए है जो की फुहारा छोड़ते हुये नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है कि एक फूल के दुकान को दिखाया गया है जो कि --

छोटे-छोटे पौधे दिखाई पड़ रहें हैं जोकि लगाए गए हैं एक रोड के किनारे --

इस तस्वीर में एक फुहारे को दर्शाया गया है तथा इस फुहारे में पानी भरा हुआ है लेकिन फुहारा नहीं चल रहा है।

इस तस्वीर में आप एक घर को देख रहे हैं जिसको बहुत अच्छे से लाइटो द्वारा सजाया गया है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बोहोत सारे फुहारे दिखाई गए हैं जिनकी रोशनी पीले रंग की है।